इमेज एक शादी हॉल की है जहाँ पर बाहर दो चेयरे रखी हुई दिखाई दे रही है।

एक व्यक्ति यहाँ पर लकड़ी काटता हुआ नजर आ रहा हैं यहाँ पर लकड़ी का बहुत सारा बुरादा दिखाई दे रहा हैं यहाँ पर एक छोटी सी बाल्टी रखी हुई भी नजर आ रही हैं।

इमेज में एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा हैंजहाँ पर हरी हरी घास दिखाई दे रही है ग्राउंड में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ग्राउंड के चारों तरफ कुछ पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ सूरज भी दिखाई दे रहा है।

इमेज मे एक बड़ा सा खेत दिखाई दे रहा हैं जहाँ पर हरि हरि घास लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक मग्गा दिखाई दे रहा है।

इमेज मे बहुत सारे फ्रूटस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर फ्रूटस कैरटों में रखे हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर तीन फ्रिज रखे हुए दिखाई दे रहे है जो कि काफी बड़े है यहाँ एक कैमरा लगा हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत सारी लाइटस यहाँ पर जलती हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक और दुकान दिखाई दे रही है यहाँ एक ऑरेंज कलर की छोटी सी बकेट रखी हुई दिखाई दे रही है यहाँ किराना स्टोर में एक फ्रिज रखा हुआ दिखाई दे रहा है साइड में कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे --

इमेज मे बहुत सारे चियरे रखी दिखाई दे रही है यहां पर कुछ फ्लॉवर्स लगे हुए दिखाई दे रहे है।

इस इमेज मे एक कंट्रोल रूम दिखाई दे रहा है जिसके बाहर कुछ बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ एक क्यू _आर कोड रखा हुआ दिखाई दे रहा--